फोरव्हीलर गाड़ी है उस वहां कुछ बड़े-बड़े टावर भी है।

बहुत ही सुंदर- सुंदर पेड़ दिखाई दे रही है एक सुंदर सी मूर्ति भी है।

एक झंडे भी गाड़े गए है आस-पास बहुत सारे आदमी भी है।

कुछ पेड़े भी दिखाई दे रहे हैं बहुत ही हरे - भरे हैं कुछ तो छोटे - छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

बगल में बहुत घने जंगल है उसमे से बहुत सारे पेड़ पौधे है।

हां कुछ आदमी भी है रस्सी भी रखा हुआ है अप च दो-तीन पेड़ पर लगे हुए हैं।

यहां कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।